लगाए हुए है और देखिये ब्लैक कलर की चेयर पर बैठे हुए है देखिये इसमें सामने देखिये एक स्प्रे की बोतल भी है और देखिये एक--

इखीए हिरन है औ ये दो हिरन दि हैं अ देखिये। इसी कलर भी काफी अच्छा लगा।

वाइट कलर की कुछ द्वार बना हुआ है जिससे अंदर जा सकते हैं और देखिये अशोक का पेड़ भी है और देखिये ये जगह देखने में बोहोत खुबसूरत लग रही है और इसकी हरियाली भी --